जालीयाँ लगी हुई हैं। कांच दिख रहे हैं। कुर्सियां रखी हैं।

एक लॉन्ड्री दिखाई दे रही है। एक आदमी दिखाई दे रहा है।

बेड दिख रहे है।

मैदान के किनारों पर बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

खेल चल रहा है लाइटे जल रही है।

हाथ में रैकेट लिए हुए है।

छोटे पेड़ लगे है घास लगी हुई है रास्ता दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

इस चित्र में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जो बहोत अच्छा सजा हुआ है।

इंक रखी हुई है डब्बे रखे है पेन रखे है।